इस चित्र में एक मोल दिख रहा है।

यहाँ बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं यहाँ बहुत सारे--

यहाँ एक तालाब दिख रहा है।

इस चित्र में कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ--

दो लड़के दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

इस चित्र में एक बाइक --

एक बड़ा शोरूम दिख रहा है यहाँ बहुत सारे कपड़े दिख रही है।

यहाँ बहुत सारे अनार दिख रहे हैं यहाँ बहुत सारे केले दिख रहे हैं।

कुछ गाड़ियां दिख रही हैं।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

यहाँ कुछ गाड़ियां दिख रही हूं।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं यहाँ कुछ चिट्टान दिख रही है।

बहुत सारे गमले दिख रहे हैं।

दिख रहा है यहाँ--

कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

कुछ मूर्तियां दिख रही हैं।

इस चित्र में एक कार दिख रही है।

इस चित्र में कुछ गाड़ियां दिख रही हैं।

एक बिल्डिंग दिख रही है यहां--

यहां कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

एक गुफा दिख रही है यहाँ--

एक क्लास दिख रही है।

इस चित्र में एक पेड़ दिख रहा है।

कुछ पोस्टर दिख रहे हैं।

एक घर दिख रहा है।

ब्लैक सोफे दिख रहे हैं।

कुछ पेड़ दिख रहे हैंयहाँ--

एक बस दिख रही है यहां एक पेड़ दिख रहा है।

एक मैदान दिख रहा है।

फुवारा दिख रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे लोग--